देख रहें हैं सामने एक काफी बड़ा ग्राउंड दिख रहा है और यहां काफी सारी घासे दिख रही हैं सामने काफी सारे लड़के दिखाई दे रहे हैं।